और बीच मे दो व्हीलर की गाड़ियाँ भी पार्किंग हो गया है ।

चित्र मे हमको एक छोटी सी फंक्शन हो रही है उस फंक्शन भी तैयारियां भी हो गया है यहाँ पे तीन वाइट --

चित्र मे हमको रानी दुर्गवाती की स्टैचू दिखाई दे रहा है इस चित्र मे इस इस देवी की रानी की बायोग्राफी चिपकाया गया है।

पर अपनी टैंक्स फिलिंग करते हैं और अह पेट्रोल के साथ डीजल के साथ फिलिंग्स करते हैं।